बहुत सारे पेड़ पौधा भी उगा--

ग्राउंड पर बहुत सारे लोग खेल रहा है।

एक ओटा भी उठा हुआ है।

इनमें बहुत सारा कुर्सियां रखा--

सामने में बहोत सारा दरवाजा भी बना हुआ है।

बैराज पर बहुत बड़े बड़े पत्थर भी रखा हुआ दिख रहा है।

कई सारे पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।

और कोने में रेड कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

सामने में एक केतली और दो प्लास्टिक का बोतल रखा हुआ दिख रहा है।

आगे में बहोत सारा चेयर और टेबल रखा हुआ है।

और उधर के सामने में दो गाड़ियां भी रखा हुआ है।

यह तस्वीर में बहोत बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

डक भी स्विमिंग कर रहा है।

और बहुत सारे बड़े बड़े पत्ता भी फैला हुआ है।

और ये तस्वीर में पहाड़ दिखाई दे राहा है और बहोत सारा बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है।

सामने में रास्ता भी बना हुआ है आस पास बहुत सारे जानवर भी दिख रहे हैं।

घोड़े की शेप में गोल्डन कलर वाला दिखाई दे रहा है जो गोल्डन कलर से बना हुआ है।

सामने में सफेद दीवार भी बना हुआ है।

ऊपर में बहुत सारा पेन और फेवीक्विक लगा हुआ है।

सामने में टेबल और चेयर भी रखा हुआ है।

सामने में स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है।

सामने में कृष्णा का मूर्ति भी बना हुआ है।

दीवार पर पंखा भी लगा हुआ है और सामने में ट्यूबलाइट भी लटका हुआ दिख रहा है।

सामने वाले टेबल पर एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है।

दीवार के आस पास बहोत सारे फ्लावर पॉट्स भी रखा हुआ है।

कोई तस्वीर में बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।